--और वाइट कलर और इसका बना हुआ है। चारों साइड से बाउंड्री वॉल किया हुआ है।

यह छठ पूजा की तैयारी हो कर रहा छठ पूजा कर रही है।

ये एक ऑफिस है जो की ऊपर शीशे का ये लगा हुआ है।

घर के नीचे भी और वहां पे रोड पे लगा रखा है दुकान सब और बहोत चीज का दुकान --